जैसे की आप देख पा रहे है सामने एक स्कूल है जामतारा इसमें लिखा हुआ है नीले कलर का बोर्ड है नीले कलर के बोर्ड में लिखा है जे.बी.सी प्लस टु स्कुल जामतारा इसी के साथ आप देखेंगे की दो पिल्लर्स है जिसपे गुलाबी कलर का पेन्ट पुता हुआ है।

जैसे की आप देख पा रहे है सामने एक ब्रिज है ब्रिज के नीचे आप देख पा रहे होंगे पानी है नदी जा रही है सामने से नदी के साथ आपको चारो तरफ आपको मिल जायेगा।

उसके साथ आपको पूरी बिल्डिंग में आपको उसकी नारंगी कलर का पेंट करा हुआ दिख जायेगा उसमे खिड़की आपको एक छोटी सी दिखे गी जिस खिड़की में नीले कलर का पेंट हुआ हुआ है ।

जैसा के आप देख पा रह है यहा पे एक बहुत बड़ी ज़मीन है ज़मीन में आपको बुहत सारी बाइके स्कूटी आपको दिख जायँगे खड़ी हुई उसके साथ यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको चारो तरफ पेड़ दिख रहे है कुछ छोटे पेड़ है हरे भरे कुछ बड़े पेड़ है हरे भरे ।

उसी के साथ ही आपको दिख जायेगा कुछ समान लटके हुए है जेसे की कुछ चिप्स के पैकेट है कुछ कुरकुर के पैकेट दिख जयेंगे और कुछ आपको डब्बे भी रखे हुए दिख जायेंगे सामने ।

और ऐसी बहुत सारी चीजे आपको छोटी-छोटी दिखाई में दिख जायेगी सर यहां पर आपको नीली आपको कलर की एक बाल्टी भी टंगी मिलेगी।

जैसा की आप देख पा रहा है आपके सामने एक चित्र है इसमे छोटी-बड़ी सायकल दिख रही है उसी के साथ आपको एक लाल कलर का बोर्ड दिखेगा जिसमे सफेद कलर से लिखा हुआ है रेलसोंन रेलसोंन के साथ साथ आपको साइकिल की दुकान में ऊपर आप जायेगे तो एक लाल कलर का बोर्ड दिखेगा।

उसके पीछे आपको बेक ग्राउंड दिखे गुबारे लगे हे जो आपको नर्गी कलर के और काले कलर के दिखेंगे नीचे के टेबल के कपड़ा बिछा हुआ है।